ये पीला रंगे फूल छै बैगनी रंगे फूल छै अ गुलाबी रंगे फूल छै ।

इ ते एता बरका नदी छे नदी ।

आ रही थी संतरा छै संतरा ला एकदम अभी कच्चा छै।